चित्र में बहुत साड़ी साड़ियां दिखाई दे रही है या फिर कोई और भी कपड़े होंगे जिनके प्राइसेस लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ज जोकी ग्लास का लगा हुआ है। दरवाजा काफी सुंदर दिख रहा है।

और कुछ पौधे भी दिखाई दे रहें हैं।

और लाल सफ़ेद कलर का दिखाई दे रहा है। बात पे लिखा है |

इस चित्र मे एक आदमी ऑटो के पीछे जाता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पे काफी ऑटो दिखाई दे रहे हैं।

इसपे ओरियो चॉकलेट और तरह-तरह के चॉकलेट लग रखे हुए है और ओरियो बिस्कुट भी --

चित्र में काफी फल दिख रहे है जोकि ट्रॉली अलग-अलग ट्रॉली में रखे हुए है जैसे --

शेर बैठा हुआ नजर आ रहा है जोकि उदास नजर आ रहा है।